यह एक नदी है इस नदी में कम पानी है इस नदी में मछली तथा जलीय जंतु पाए जाते हैं इस नदी के ऊपर बहुत सुंदर है ।